उसके हाथ में कुछ कपड़ा वगैरा भी है।

और काफी सारे दिवाले दिख रही हैं।

निचे एक हवनकुंड भी बना हुआ है।

यह एक पुराने प्रकार के सामानों की जगह है।

जोकि कुछ चेक कर रहे है कुछ बजा रहे हैं।

रोड पे काफी सारी कारे खड़ी हुई दिख रही हैं।

कुछ करंट वायर भी इधर- उधर जा रही हैं।

कुछ लोग वर्जिश कर रहे हैं।

एक ने फिर नीले कलर की टी-शर्ट पेहेन के रखी हुई है।

और रात का समय है।

जोकि हरे-भरे हैं। अंदर भी काफी पेड़-पोधे हैं जो कि हरे-भरे हैं। एन्ट्री गेट काला और सफ़ेद है।

बाकी सब लडकियाँ है और पी उनके पीछे एक बैनर भी लगा हुआ है।

सफ़ेद कलर की स्वेटर पेहेन रखी है ब्लू जीन्स है नीचे जुते भी ब्लू कलर के हैं ऊपर --

मोसम साफ़ है। पहाड़ दिख रहे हैं। हरे-भरे हैं पहाड़।

और एक वेट मशीन भी रखी हुई है। एक बाल्टी रखी हुई हैं। टपरा --

एक बोर्ड लगा हुआ है। कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

कुछ लाइने दिख रही हैं। कुछ डिज़ाइने दिख रही हैं वहां पर और प्लाइ पे कुछ लिखा हुआ है।

लाइटें लगी हुई हैं। कुछ पंखे लगे हुए हैं और दुकान में एक पीछे से गेट भी दिख रहा है।

यह एक बस डीपो है। यहाँ पर काफी सारे लोग बस के ऊपर चड़े हुए हैं। बस के अंदर हैं।

एक पोलिसमेन दिख रहा है। कुछ व्यक्ति वहां पर खड़े हुए हैं। बस सफ़ेद रंग की है और कुछ खम्भे दिख रहे हैं।